दो औरते सामने से आती हुई दिखाई--

जहां कुत्तों के लिए दवाई मिलती है दुकान--

मम फ्रिज है जो कि बहोत लंबा है और इसमें बहोत सारे लोग --

सुंदर तरीके से सजाया गया है।